और साइड कि दीवार नि ए सफेद और--

कुछ गमले रखे हैं इनमें हरे पौधे लगे हुए हैं और सामने एक जाली लगी हुई है जो नीली है।

यह रिक्शा है इसके पीछे की चोटी लाल कलर की है और नीचे--

ये बोहोत सारे पत्थर ओं का घाट बना हुआ है और इसके चारों ओर बोहोत सारे पेड़ देख--

सामने दुकान दिख रही है जिसके ऊपर लाल पोस्टर लगा है जिसमें सफेद नीले हरे--

पिले कलर से बहुत कुछ लिखा हुआ है।

और कुछ मोटरसाइकिल खड़ी हुई है साइड में एक--

सामने एक बड़ी बिलिंग दिख लही है जो क्रीम कलर की है और भी इसकी--

कंप्यूटर है एक बंद है एक चालु है बीच में एक छोटी भगवान जी की मूर्ति रखी--

मछली डली हुई हैं जो बहोत बड़ी है पीछे एक काला--

सामने एक ट्रैक्टर दिख रहा है जो नीले कलर का है जिसमें पीछे--

वैक्सीन लगे हुए हैं और पीछे एक आदमी खड़ा हुआ है साइड में लोहे का सफेद--

सामने एक हॉल है जिसमें बेड जले हुएँ हैं जो सफेद कलर के हैं और ऊपर--

नीला और सफेद कलर का है पीछे दीवाल में कुछ मशीने लगी हुई है।

थेल्ली बिछी हुई है और सामने चप्पल डली हुई हैं।

और पिंक कलर के फूलों की झालर बनी है और सफेद और पिंक ग्रीन फूल--

सामने बहोत सारी टेबल लगी हैं जिनपे मछलियां रखी हुईं हैं कुछ सफेद सफेद खाली--

मास्क लगाए हुए है जो कथइ सफ़ेद मास्क --

काले कलर की लगी हुई है नीचे कार खड़ी हुई है और साइड वाली बिल्डिंग के--

नीचे कार खली हुई है और एक --

लड़का है और दोनों साइड घर बने हुए हैं जो सफेद दिख रहे हैं और--

और कुछ पेड़े है ऊपर नीला आसमान दिख रहा है एक साइड खेत में दिवाल दिख सही है।

डिश छपी हुई हैं और नीचे कांच के बॉक्स बने हुए हैं जिसमें अंदर सामान रखा हुआ है।

है जिसके हाथ में पीला और लाल कलर का झंदा है।